आहे और पास मे कुछ भाजियां बिक रही हैं।

और नीले रंग की स्टूल के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ टमाटर भी है और बहुत सारी भीड़ --

और आसपास में अ बोहोत ऊंची ऊंची मल्टियाँ बनी हैं। मार्केट है कोई। अ लेकिन यहाँ पे कोई शॉप ओपेन नहीं दिख रही है। एक खम्बा है बिजली का और एक आदमी जा रहा है।

ग्रीन वोइलेट और अ व्हाइट कलर कलर की लाइट जल रही है पास में एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। दो पेड़ हैं।

यहाँ एक कार रखी हुई है और कार का रंग सफ़ेद है पीछे यल्लो कलर की नेम प्लेट अ नंबर प्लेट लगी है। इसके हेडलाइट अ गुलाबी रंग के है और नीले रंग के हैं।

एक आदमी यहाँ से दो बोरी अपनी मोटर साईकिल पे रख के ले जा रहा है और एक सब्जी का अ दुकान है।

नेट वाली खिड़की है और एक डी.टी.एच. लगा है और --

और इसमें अ एक स्कूल की बस खड़ी हुई है। यहाँ कुछ पाइप रखे हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे एक साईकिल रखी है। एक एक्टिवा रखी है और एक सीढ़ी रखी है और --